एक तरफ पड़े है। में समान पड़ा है काफी सारे लोग हैं।

उसके आगे थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है। पानी के बीच में दलदल फसा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ लगी हुई टहनी दिखाई दे रही है। पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन कलर के ये है।

दिखाई दे रही है उसपे चलते हुए लाइटे दिखाई दे रही हैं। दीवारे